इसमे बर्थ्डै पार्टी चल रही है इनका बच्चा एक साल का हो गया है तो केक रखा हुआ है केक भी आए है बहोत सारे गेस्ट आए हुए है।

एक बहुत बड़ा कांच लगा हुआ है और पीछे लिखा हुआ है जिम की मशीन राखी हुई हैं।

इसमें एक घर सजा हुआ है बिल्डिंग पूरी सजी हुई है व्हाइट और रेड कलर के बलूंस से।

बरसाती पर बहुत सरे मछलिया लगी हुए है कुछ लोग मछलिया काट काट कर बेच रहे है इस में।

लड़के ने सर पर एक कैप लगा रखा है शूज पेहना हुआ है।

एक बच्चा माइक पे खड़े होक कुछ बोल रहा है पीछे लाइन से ऑरेंज कलर के बलून लगे हैं उस के निचे सफ़ेद कलर के बलून लगे है उस के निचे ग्रीन कलर के बलून लगे हुए है।

इसमें एक लाल कलर का बहुत बड़ा बाउन्ड्री जैसा गेट बना हैं उसमें दो शेर बने हैंआस-पास हरियाली नजर आ रही है आसमान दिख रहा है।